एक फूल भी दिखाई दे रहा है जो गुलाबी रंग का है।

हमे दूर मे कुछ घर भी नजर आ रहे हैं।

नदी के बीच में हमें एक ब्रिज जैसा भी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें एक बड़े आकृति का बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

वहीं कुछ गाड़ियां भी दिख रही हैं। जो रस्ते पे हैं।

हमे कुछ रेलिंग्स भी दिखाई दे रहे है।

हमें एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

हमें कुछ घास भी दिख रहा है जो छवि में है।

हमें कुछ पर भी नजर आ रही है।

ये चित्र में हमें एक नदी जैसा दिखाई दे रहा है।

हम एक छत भी देख पा रहे हैं।

हमें एक टी_वी भी दिखाई दे रहा है।

हमें कुछ तकिया भी नज़र आ रहे हैं जो सफ़ेद रंग के है।

टेबल का रंग काले जैसा लग रहा है।

हमें कुछ रेलिंग भी नजर आ रहे हैं।

बिल्डिंग भी नजर आ रहा है।

हमें घास भी देख रहा है।

अदमी ने एक सफेद रंग का ईयरफोन लगाया हुआ है लगता है।

हमें दूर में पेड़ पौधे भी नजर आ रही है।

बाहर भी कुछ गाड़ी दिखाई दे रहे है।

हमें कुछ लोग भी दिखाई दे रहा है जो एक पाइप लेके खड़े हुए हैं।

पाइप से पानी निकल रहा है।

रस्ते के साइड में हमें कुछ रेलवे ट्रैक जैसा भी दिखाई दे रहा है।

हमें कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं।

तीन लोग के मुंह ब्लर किया हुआ है।

हमें कुछ झंडे भी दिखाई दे रहे हैं जो बैनर के ऊपर लगे हुए हैं।

ये बहोत सारे लाइट भी नजर आ रहे हैं जो छत के नीचे है।

पे कुछ सीढ़ियां और टंकी भी नजर आ रहे हैं।

हमें कुछ बैनर भी दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर दिखाए गए चित्र में हमें कुछ टेबल और चेयर नजर आ रही है।

हमें बिल्डिंग और पेड़ दिख रहा है।

मे बहोत सारे लाइट और फैन भी दिख रहे है।

व गेट का रंग लाल और सफेद दिखाई दे रहा है।

प्रवेश द्वार पर हमें कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

हमें एक चेयर दिखाई दे रहा है जो लाल रंग का है।

पेड़ के ऊपर एक बक्सा रखा हुआ है।

ये छवि में हमें एक छोटा सा झरना जैसा दिखाई दे रहा है।

हमें कुछ फूल भी दिखाई दे रहा है।

हमें एक वॉल दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ मूर्ति जैसा है।